गंगा के किनारे बैठ कर उसका आनंद उठाना ये एक अलग ही मजा है।

या मध्य विद्यालय काफी अच्छा है मतलब काफी बड़ा देखने को लग रहा हैपार्किंग भी बना हुआ है जो अच्छे तरीके का हैअच्छे तरीके से लगी हुई है किसी को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और स्कूल काफी बड़ा हैबोहोत सारे बच्चे इसमें आके पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से काफी अच्छा है।

इसके बारे में इतना तो नहीं पता लेकिन काफी अच्छा ये सरकारी दफ्तर टाइप से लग रहा है और चारो और हरियाली है। अक्सर सरकारी दफ्तर कर के आसपास इतनी हरियाली जगह होती है।